एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

कुछ ब-बच्चे हाथ में कैंडल लेके खड़े हुए हैं।

सेल्फी ले रहे हैं।

एक यहाँ पर स्टील की ग्रिल लगी हुई है।

कुछ व्यक्ति खड़े हुए है।

यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं कुछ छोटे-छोटे पेड़ भी हैं।

पीछे पानी भरा हुआ है।

यह एक बोहोत बड़ा मैदान है।

यह एक सड़क है सड़क के पास एक ग्रिल लगी हुई है लोहे की।

एक कार खड़ी हुई है।

यहाँ एक मैदान में बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं।

कुछ पेड़ हरे हैं कुछ सूखे हुए हैं।

जो कि नीले कलर का है।

यहाँ पर सूर्यास्त होते हुए दिखाई दे रहा है।